यहाँ पर डेकोरेशन वगैरह भी है यहाँ पर--

यह तस्वीर एक खुले मैदान की है इसमें तीन बच्चे--

और यहाँ पे काफी सारी बड़ी-बड़ी मछलियां भी है और काफी सारी छोटी छोटी मछलियां भी है।

और योगा कर रहे हैं योगा बहुत अच्छा है एक सेहत के लिए--

स्कूटी भी साइड में रखी है एक बया यहां पर बैठा हुआ है।

ये तस्वीर जिम की है यहाँ पर एक आदमी--

यह रेलवे स्टेशन है यहाँ पर रेल चल रही है और काफी सारे लोग यहां पर साइड में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।

यह तस्वीर एक नदी की है जहाँ से पानी बह रहा है।